रोड साफ सुथरी दिखाई दे रही है।

एक डेस्क लगा रखा है डेस्क के ऊपर मिरर है उसके अंदर कुछ गिफ्ट आइटम रखे हुए है।

पानी आ रहा है झरने जैसा।

आस पास हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं हल्की-हल्की घास दिखाई दे रही है।

इधर उधर कुछ घर बने हुए है।

एक सामने गेट दिखाई दे रहा है एक ऊपर पंखा है स्विच दिखाई दे रहे हैं।

गैराज के बाहर एक गाड़ी खड़ी है धोने के लिए एक पाइप है।